इस फोटो में हमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

बहोत सारी डेकोरेशन करी हुई है यहां पे कुछ डी_जे दिखाई दे रहे है।

हमें यहां पे मक्के की भुट्टे दिखाई दे रही हैं।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

हमें यहां पे एक दरिया दिखाई दे रहा है।

किसी जिला है पठान कोट भी है।

इस फोटो में हमें कुछ चूड़ियां दिख रही है।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

हमें यहां पे रंग बिरंगे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पे कुछ करते दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं--